खंबा लगा हुआ है उसमें बिछा हुआ है कुछ छोटे और कुछ बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

गुलाबी कलर का घर बना हुआ है। बगल में एक ईटों का घर बना हुआ है सामने उसकी बगल में पेड़ लगे हुए है और उसके बगल में भी पेड़ लगे हुए है|

फूल लगे हुए है सामने डी.जे रखे हुए है फर्श का रंग सफेद है और नीले कलर का एक बेड दल हुआ है जिसपे गुलाबी कलर का एक चद्दर का कवर एक कुर्सी भी डली हुई है चार खम्बे एक जैसे--

हरे पर्दे डले है और गुलाबी कलर के भी पर्दे डले है फूल लगे है फूलो का रंग गुलाबी लाल पीला नीला है।

गोल्डन कलर का गेट लगा हुआ है जिसपे फूल चिपकी हुई है लाल कलर की पत्तियाॅं लगी हुई है गोल्डन कलर का उसपे डिजाइन बना हुआ है एक रेलिंग है और गमलों में पेड़ रखी हुए है कनस्तर रखा हुआ है।